पर इंटें सिमिंट --

फूल खिले हुए हैं।

डेर लगा हुआ है।

के लिए सामान मिलता है।

एन जे बी पार्लर है।

ये लड़का जिम कर--

इन हैं इसके--

के_एम रिजॉर्ट है।

में सामने गेट ओपन है।